और इस लोयन ने माला पहन रखा है फूलों का--

ऊपर लाइटिंग है। अंदर भी सारी बुक्स रखी हुई हैं।

और यहां पे बहुत सारा डेकोरेशन अच्छी हो रखी है ग्रीन ग्रीन कलर की--

और इधर देख सकते हैं लड़की लिख रही है हैंड लव उसका फेस हाइड है और ये ब्लू कलर के लगे हुए हैं इसमें--

यहाँपे आप देख सकते हैं ये एक बैंक हैं आई थिंग यहाँपे ऊपर एक एल_सी_डी लगी हुई है बहुत बड़ी उसपे लिखी हुआ है बिकाश उत्सव मुफ्त रासन ।

बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है ट्रैफिक लग रहा है बहुत भीड़ हो रही है।

और नीचे बहुत भीड़ है आसपास पेड़ पौधे हैं।